कुर्सी के ऊपर दो तकिया रखी हुई है एक स्टूल रखा हुआ है स्टूल के ऊपर एक चार्जिंग रखा हुआ है।

पीछे पेड़ लगे हुए हैं ऊपर कुछ लिखा हुआ है बहुत सारी साइकिलें खड़ी हुई हैं।

रेतीली मिट्टी है आदमी के हाथ में एक कागज दिखाई दे रहा है।

इस पर कुछ लिखो है। लोहे का काउंटर रखो है।

ऊपर पंखे लगे हुए है दीवाल पर एक लाइट का बोर्ड लगा हुआ है पेंट र कर रखा हुआ है।

पीछे कुछ घर बने हुए हैं हरा भरा घास जमा हुआ है।

इसके अंदर लाइट लगी हुई है कांच का गेट लगा हुआ है।